भारतीय तिरंगा है गेट के आसपास बिजली के खम्बा दिखाई दे रहे है गेट के निचे कुछ गाड़िया खड़ी हुई दिख रही हैं।

जिम में कुछ गुब्बारे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है ए_सी और पंखे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

तालाब के किनारे पर एक लगा हुआ दिखाई दे रहा है आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं एक आदमी भी खड़ा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक मंदिर दिख रहा है मंदिर के ऊपर लाल झंडे लगे दिखाई दे रहे है ।

इस तस्वीर में एक दूकान दिख रही है जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बलरामपुर लिखा हुआ हैं।

इस चित्र में ए गेट दिखाई दे रहा है गेट के साइड में एक दी गुलाबी कलर की दिवार बनी दिख रही है।

दुकान के अंदर लाल कुर्सिया भी रखी दिख रही है दुकान के बाहर कुछ सीढ़िया भी बनी दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे एक मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति के इधर पास बहुत-सी सीढ़िया बनी हुई दिखाई दे रही है।

घर के पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है उपर कुछ बिजली के तार भी दिखाई दे रहे है।

आस -पास बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिख रहे है मंदिर पे लाल झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पहाड़ पर बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।